इस तस्वीर में तीन बच्चे मुझे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

शीशे का एक दरवाजा नजर आ रहा --

इस तस्वीर में मुझे एक स्कूटी दिखाई दे रही है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने व्हाइट कलर की कुछ पहनी हुई है।